यहां पे एक मंदिर जैसा दिख रहा है जिसको ऊपरी अ मीनार जैसा बनाया गया है।

यह एक जिम की फोटो है यहां पे एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा है जो कि ब्लैक कलर के टेबल पे बैठा हुआ है।

जहां पे ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और वहां पे दरिया एक नजर आ रहा है दूर से दरिया के किनारे पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

यहां से अ कुछ ब्लू कलर का ठेला जैसा नजर आ रहा है।

वहां पे नीचे टाइल लगी हुई है जो की ग्रे कलर की है और अंदर कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं व्हाइट कलर की ब्लैक कलर की हैं।

वहां पे भी गेट जो है वो ग्रिल का है और बीच में गमले वमले रखे हुए हैं।

और दीवार पे भी बोर्ड जैसा लगा हुआ है जिसपे ये स्कूटी बनी हुई है उसपे एक बंदा भी है।